बस पे भीड़ चढ़ा हुआ है बस के ऊपर से नीचे तक लोग

सब सुन्दर घर है और यहाँ का व्यवस्था

लगता है यहाँ पंजाब नेशनल बैंक है और पंजाब नेशनल बैंक का सर्विस --

ये स्प्राइट का बोर्ड लगा हुआ है ये स्प्राइट का कारखाना है कोल्ड ड्रिंक --

यह हमलोग पुरे भक्त पूजा बड़ी धूम धाम से मनाते है इस पिक्चर को सिन कहते हैं |

मैं अपना ये रेसिवेर्स है परफेक्ट और गरम भी है |

इस चित्र पे पक्षी और मोर --

टू व्हीलर फोर व्हीलर --

काहे काहे सारा गुफड़ आर भी लगा हुआ है इसका डोकरेशन भी है ।

यहाँ पे पहाड़ दिख रहा है पहाड़ के नीचे --

वह ये भगवान बुद्ध का देह दिख रहा है हमको |

एक छोटा है एक बड़ा है पीछे में --

एक साइकिल भी दिख रहा है और बगल में झाड़ी भी दिख रहा है ।

जो लाल रंग का है ।